इस तस्वीर मे लाल रंग का एक डी मंदिर दिख रहा है मंदिर पर श्री राम जा जानकी मंदिर लिखा गया है और यहा पे फूलों से सजाया गया है|

--घर के आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं और यहां पर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में खिलौने की दुकान दिख रही है दुकान पर बहुत सारे खिलौने लगाए गए है।

इस तस्वीर में एक हरे रंग का अ इमारत दिख रहा है इमारत पर लाल रंग भी किया गया है और इमारत में खिड़की दरवाजे नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान नज़र आ रहा है मैदान में बहुत सारे पेड़ पौधे और दीवार बनाई गयी है | दीवार पर लोहे की कुछ जालियां लगाई गयी है।

इसके आगे अ एक चश्मा पर्स और कैंची और कुछ पानी वाली बोतल रखी गयी है।